समुंदर के बीचो बीच नाव में दो व्यक्ती तेराकी कर रहे है।

सड़क के किनारे एक ऑटो खड़ा हुआ है सड़क के किनारे कुछ दुकाने बनी हुई है जिसमे कुछ बैंक है तो कुछ --

जैसा की में देख पा रही हु यह एक सड़क है सड़क पर काफ़ी भीड़ भाड है।

प्लास्टिक के है यहाँ पर एक महिला भी खड़ी हुई है यहाँ पे लाल पीले सफ़ेद रंग के --

पानी रखे गए है यहाँ पे बिस्कूट नमकीन टॉफी आधी सभी चीजे मिलती है।